यह एक कार खड़ी है और एक बाइक खड़ी है और यहां एक कॉमर्स क्लब का स्टडी सेंटर है जो बच्चो की शिक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है।

और यहां के नजारा देखते हैं ताकि यहां के बाहर के लोग आते हैं तो वहां के जो लोकल निवासी है उनके आमदनी का एक स्रोत जो है हिल स्टेशन है।

शादी का समारोह वगैरह वर्षगाठ वगैरह मानाने के लिए लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जाते है अपना एन्जॉय करते है और जा करके घर आ जाते है।

खाते में पैसे होते है तो आदमी जरूरत के हिसाब से पांच सौ रूपए दो सौ रूपए हज़ार रूपए जब जितनी जरूरत होती है तो उतना निकाल लेते है।

यह एक दुकान है हिमांशु टेम सेंटर का दुकान बंद पड़ा हुआ बंद है डी.आई. ए.टी.एम. खुला हुआ है।

और यहाँ खूब बड़ा मीटिंग होता है तो लोग यहाँ पे आते हैं और कोई अजेंडा सेट करते हैं आगे के लिए। कोई किस तरीके से आगे काम करना है। उस काम के लिए सारे इकट्ठा होते हैं और मीटिंग होती है।